इस तस्वीर में मुझे फूल दिखाई रिया है । जिसमें हल्की हल्की लाल कलिया सी लगी हुई है । नीचे का पत्ता हरे दिखाई दे रहे हैं ।

देखो यह पंखा है कि पंखी दिखाई दे रही है।

बोहोत सारी पंखीत लगी हों | एक पंखी ज तन ए एक ज तन दो दो ज तन चार और एक ऊपर एक निचे छह पंखी हैं ।

पर्चों मे लड़के दिखाई दे रहे हैं एक बैग रखा उसके अंदर कुछ समान रखा एक सोफ़ा रखा है | सोफ़ा का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक प्लैन दिखाई दे रही है जो नीली कुछ वर्कर काम कर रहे हैं। चार स्टैन्ड लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में मेरे को कुछ मूर्ति दिखाई दे रही है एंड एक लड़का हाथ जोड़े खड़ा है यह है।